यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक है जिसके बाहर कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और इसके बाहर कुछ औरत भी खड़ी हुई है और एक औरत बैठी हुई है।

और एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है और बिल्डिंग के ऊपर एक पाइप भी लगा हुआ है।

यह एक हेयर सैलून है जिसके अंदर कुछ कुर्सियां रखी हुई है।

और इसके पास में बोहोत से घर भी बने हुए हैं।

और इस स्कूल में ग्रिल भी लगी हुई है।

और इसकी छतों में बहुत सी लाइटें लगी हुई है और जीने के पास में एक छोटी सी बाल्टी भी रखी हुई है।

यह एक शोरूम है इस शोरूम के अंदर बहुत से फ्रिज रखे हुए हैं।

और इसके बाहर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है और एक गाड़ी के ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है।

और इसके अंदर एक का लगा हुआ है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक दुकान है जिसके अंदर एक फोटोस्टेट करने की मशीन रखी हुई है और एक कुर्सी रखी हुई है।

और इसके अंदर छोटा छोटा घास भी उगा हुआ है।

और इसके पास में बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

यह एक बहुत ही अच्छा पहाड़ है जिसके बीच में से एक झरना बह रहा है।

यह एक पैलेस है जिसके अंदर बहुत अच्छी सजावट की गई--